मुझे इधर टेबल भी नजर आ रही है।

पीछे मुझे काफी सारी किताबें दिखाई दे रही है।

तस्वीर में एक कमरा दिखाई दे रही है।

आगे मुझे एक स्टेज दिखाइ दे रही है स्टेज में मुझे एक बड़ा सा बैनर भी दिखाइ दे रही है।

ऊपर की चारों ओर काफी सारे डिस्को लाइट्स से घेरा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर मे एक दुकान दिखाई दे रही है।